यहां पर एक स्टूल रखा हुआ है और एक चेयर भी लगी हुई है।

यहां पर बैठने के लिए चेयर लगी हुई है।

और वहां पर एक पानी से भरा हुआ फवारा भी है।

और उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ है और चारों तरफ भी काफी हरियाली नजर आ रही है।

मुझे यहां पर एक्सपर्ट लिखा हुआ दिख रहा है।

रेड टी शर्ट पहने हुए पानी पी रहा है दो आदमी सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

पंप मर मुझे कुछ गाड़ियों पर पेट्रोल डालता हुआ भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां पर जानवरों की मेडिकल शॉप दिखा रही है।

मुझे यहाँ पर एक बहुत सुंदर बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

उस मंदिर मे बहुत सुंदर लाइट लगी हुई नज़र आ रही है।

और यहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।